थोड़ा थोड़ा लाइट ब्लू रंग का भी जल रहा है और व्हाइट रंग का भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है।

कुछ पत्थर टूटा हुआ है और कुछ बहुत बड़ा भी है।

का रंग ब्लैक कलर है गिटार का रंग पीला कलर का है एक लाल कलर का ह--

घर के बगल मे बहुत सारे एक फील्ड दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है दुकान में काउंटर लगाया हुआ है काउंटर का रंग लाल कलर है और वाइट कलर का है।

रोड के बगल में बहुत सारे घास भी है और बहुत सारा पेड़ पौधा भी है।

ऊपर में एक बोर्ड लगाया हुआ है बोर्ड में व्हाइट कलर का बोल जल रहा है।

और बहुत सारा कॉपी किताब रखा हुआ है काउंटर में।

वह भी ऊपर रखा हुआ है बहुत सारा।

बहुत सारा बाइक लगा हुआ है साइकिल भी लगा हुआ है।